ये एक बरफ का चित्र दिखाई दे रहा है और इधर इस शहर में कई सारी बरफ वगैरह गिरी है।

ये मंदिर मजीद दिखाई दे रहा है और बहोत सारी औरते बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई है ।

ये एक ये एक प्लाटिंग का चित्र दिखाया जा रहा। इस खेत में कई सारे गुम्मे वगैरह रखे हुए है।

ये एक ग्राउंड का चित्र दिखाया जा ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पाँव सीधे कर रहा है और ये व्यक्ति लेता हुआ किसी से बात कर रहा है।

यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और उसके बाहर एक मूर्ति भी बनी हुई --

पर इस ग्राउन्ड में अगल-बगल कई सारी हरी-हरी घास वगैरह लगी हुई हैं। पर इस ग्राउन्ड में कई सारे बच्चे खेल रहे हैं।

और इस घर के बगल में कई सारे ईंट वगैरह रखे हुए हैं और इस घर के अगल-बगल कई सारे मजदूर काम कर रहे हैं और कई सारे मजदूर इस घर को बना रहे हैं।

अ इस फैक्ट्री में दो इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं।

ये एक चित्र दिखाई दे रहा है। इधर कई सारे व्यक्ति नाज वगैरह उतार रहे है।